ये एक बड़ा सा समंदर दिख रहा है यहां पे यें--

आजू बाजू पहाड़ ही पहाड़ पानी ही पानी है मछलियां भी अंदर दिख रहे हैं पानी में।

ये एक छांव छे यहां पे बहोत सारी मूर्तियां हैं स्पीकर्स हैं माइक्स रखे हुए--

नीचे भी कपड़े हैं ऊपर भी कपड़े हैं यहां पे ढूंढ लो खाली कपड़े ही कपड़े हैं लेडिज जेंट्स सब --

बहोत सारे घरा दिख रहे यहां पे कि ढेरी भी लगाई गई हैं मट्टी कि ढेरी भी लगाई गई--

आपका बॉल भी रखा हुआ है लैपटॉप है माउस है की बोर्ड है यहां पे--

और इनके जना भी दिख रहे आजू बाजू बहोत सारे बड़े बड़े यहां पे पेड़ दिख रहे है। फॉरेस्ट में--

बहोत सारे घर है के सामने मट्टी पड़ी हुई है सामने रास्ता है।

ये एक बड़ी सी इंडस्ट्री है बाजू में होटल है।